दिवार पर एक पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है उसके नीचे एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके बाहर एक सेक्शन लगा हुआ है जिसमें शीशे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

गाय के पीछे एक बड़ा सा कमरा दिखाई दे रहा है।

शीशे की बर्निया रखी हुई दिखाई दे रही हैं। एक फ्रिज रखा हुआ है। जिसमें बोहोत सारी --

बहुत सारे ये मशीन रखी हुई हैं। यहाँ पर एक खिड़की दिखाई दे रही है जिसमें कलर का कपड़ा टंगा हुआ है। यहाँ पर एक एक्स्हौष्ट फैन लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पर एक पाइप दिखाई दे रहा है जो प्लास्टिक का है जिसके ऊपर बहोत सारे तोते बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके सर पे कुछ बाल खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो काफी सुन्दर लग रहे हैं।

यहां पर बहुत बड़ी-बड़ी सब्जियों की क्रेटे रखी हुई दिखाई दे रही है। जिसमें बहुत अलग-अलग कलर की सब्जियां रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ की दीवार पर एक पेंटिंग बनी हुई दिखाई दे रही है।

पीछे दो खिड़कियाँ खुली हुई दिखाई दे रही है छत मे व्हाइट कलर के पंखे लगे हुये हैं यहाँ पे एक ब्लू कलर का चार्ट लगा हुआ है।